ये पार्क तो बहुत बढ़िया है भाई।

यहाँ लोग भाग बैठते होंगे आपस में बातें करते होंगे दो चार कितना मजा आता हो यहां पर बातें करने में।

लंबी चलक देंगे यार घूमना बढ़िया जगह है घूमने की वो।

और बहुत सारे लोग वाक एक्सरसाइज करते हैं वॉकिंग करते हैं।

वो वाली पेंट शर्ट कित्ती मस्त दिख रही है ना एक दम मज़ा आ रिया है भाई।

और यार क्या कहते हैं बाजार में अभी आनी चाली हुई है लीची और यार लाने का मन कर रिया है भाई।

यार मेरा घर भी काश ऐसा ही होता यार मेरा कमरा भी बहुत --

यहाँ इसके पास में जो फूल रखे हैं कितने अच्छे-अच्छे लगते हैं गुलाब के गेंदे के।

हाँ और उधर से भी ट्रेन से ही आंगे ।

चल आ जैकेट ले आते है यार एक आधा।

देखिए एक दम ऐसा लग रिया वो लड़का जो खड़ा है नीले कलर का जो गेट लग रिया इसमे नीले कलर जो देख कित्ता --

कित्ता बढ़िया होटल है भई।

कित्ती ऊँची-ऊँची बिल्डिंग हैं फ़्लैट हैं यार यहां फ्लैट मिलता होगा एक।

कितने सारे लोग बाग रहते होंगे यार इस कॉलोनी में --

यहाँ से चल यार एक आधा फाइल ले लेते हैं।

स्टार जल रहे हैं यार कितना मस्त लग रहा है ना फोटो यार।

कितना हल्का बल्ला है एडिदास का बढ़िया।

और इसपे पानी की बूंद जो है छोटी-छोटी कितनी मस्त दिख रही है।

बिल्डिंग है उसके मैनेजर हैं ये।

केले भी हैं पपीता भी रखा हुआ है सब चीज है अंगूर भी।

और ये बच्चा स्कूल जा रहा है तैयार वैयार होके तो कितना अच्छा बच्चा है ये कितना मासूम है।

यार आज मार्केट में से टमाटर लाते हैं खरीद के।

कित्ता अच्छा लग रहा है शायद ये कोई गेम है।